एसी दिखाई दे रही है। कुर्सी दिखाई दे रही है।

और रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहाँ और रेलवे लाइन दिखाई दे रही है।

यहाँ एक समी बुक डिपो का पोस्टर लेगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड मे लगे --

दो एक दो आदमी दिखाई दे रहे हैं।

की बाउंड्री बनी दिखाई दे रही है।

एक जिम दे रही है। जिम में अलग अलग प्रकार की मशीने --

बनी एक स्मारत दिखाई दे रही है।